तस्वीर एक मस्जिद की है जिसमें मस्जिद को दर्शाया गया है। मस्जिद अभी बन रहा है। ऊपर में तारे लगे हुए हैं। लकड़ियां बांस वगैरह लगी हुई हैं।

एक दो लोग हैं दो ठो गुम्बद नजर आ रहा है बगल में पेड़-पौधे हैं सामने में दरवाजा भी है।

तस्वीर में पार्क है छोटा सा दर्शाया गया है जिसमे लाइटें वगेरा लगी हुई है। छोटे-छोटे पौधे लगे हुए हैं |

लाइट वगेरा है एक छोटा सा दूर मंदिर नजर आ रहा है पीछे पेड़ भी है पहाड़ भी है सामने नल भी है

तस्वीर में दिखाया गया है चिल्ड्रन पार्क । बच्चा लोग का एक छोटा-सा पार्क जिसमें दो छोटे-छोटे डस्टबिन रखे हुए है। खरगोश बनके एक चेयर है खेलने का है।

तस्वीर में समुंद्र है जो कि पीछे में टॉवर है। कुछ घरें नजर आ रही है पेड़-पौधे हैं। खुला आसमान है।